यह एक आंगनवाड़ी केंद्र है जिसके साइड में लिखा हुआ है कोविड नाइनटीन टिका रजिस्ट्रेशन ।

उसके साइड में लिखा हुआ हैं बाजार इंडिया ।

मॉल के बाहर में एक आदमी खड़ा हुआ है और बहोत सारे कपड़े दिख रहे हैं।

यह एक जंगल है जंगल मे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और हरे हरे घास भी हैं।

पीछे में एक बिजली का खंभा है और पीछे साइड बहुत सारे घर हैं।

और बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं।

यह एक खोटल है जिसका नाम साथिया होटल है।

यह एक बस स्टैंड है जहाँ पर बहुत सारे यात्री खड़े है बस पर चढ़ने के लिए।

यहां पर दो लोग है एक साइड में और एक साइड में एक लोग है।

उपर में बहोत सारी लाइटिंग है और सामने में एक सोफा है और एक फूल है।

यह एक रोड है जो बोहोत ही बड़ा दिख रहा है।

एक साइड खजूर का तीन चार पेड़ है और एक साइड भी बहोत सारे पेड़ है।

रोड के साइड मे ही एक पेड़ लग रहा है।

रात का टाइम है और बहुत सारे लोग सामने ही खड़े हैं।

नीचे में कुछ लड़के स्नान कर रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ भी हैं और हर जगह पत्थर ही पत्थर हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहा पर तीन प्लेटफारम बनी हुई है।

और एक ट्रेन उधर से आ रही है।

यह एक बिल्डिंग है जो अभी बन रहा है।

पांच मंजिला एक बिल्डिंग है। बाहर में फील्ड है।

और सामने में एक फोटो बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है और रेलिंग भी है।

के सामने एक चार चक्का वाहन खड़ा है और उसके ऊपर तीन लाइटें हैं।

यह एक रूम है। इस रूम मे दो कुर्सियां हैं। दोनों कुर्सियों का रंग लाल है।